और उसके सामने दो लोग हैं जिनमें से एक ने ऑरेंज और ग्रे कलर की टी-शर्ट पहनी है और ग्रे कलर के पैंट है।

और इनमें से एक लड़का जो है उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है उसके बगल में एक लड़का है उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है उसके पीछे दो लड़के है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक स्टेज है जिसमें बहुत सारी लाइटें लगी है बहुत सारी लाइटें जो है रेड कलर --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने पहाड़ है पहाड़ जो है हल्का-हल्का ग्रीन कलर का है और।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं एक जगह है और इसकी एक दीवार जो है वो पूरे शीशे की बनी है वहां पे एक सोफा लगा है सामने एक लेडी है।

और व्हाइट कलर की पैंट और सामने एक डेस्क है डेस्क के सामने एक आदमी है।

और इसमें से कुछ का दीवार जो है वो ब्राउन कलर की है कुछ हल्के ये बिस्किट कलर की है।

बैलून जो सजाए गए हैं वो ब्लू कलर के और वाइट कलर के कॉन्बिनेशन में है चार बैलून ।

और एक आदमी जो है पूरा ब्लैक कलर का शर्ट एंड पैंट पहना है अंदर जो है इसमें एक लड़का है जो एक बाइक बैग टांगा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे एक हाथी है हाथी का कलर जो है वह ग्रे कलर का उसकी सुण जो है वह वाइट कलर की है।